जो कि उसके कलाकार के मतलब हथियार भी बोल सकते हैं।

इसमें फोटो स्टेट है और बाहर की तरफ मे दो तीन कुर्सियां भी लगाई है और ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी रखी गई है ये एक कांच का गेट भी है और --

और अगली अगली साइड में इसमें पे बहुत बड़ी सीढ़ियां लंबी लंबी सीढ़ियां लगी हुई हैं और छतरियां लगी हुई हैं और --

कुर्ता पहने हुए एक ब बच्चा है जो कि उस पेड़ पर चढ़ा हुआ है और फोटो खिंचवा रहा है पीछे की तरफ एक गार्डन नजर आ रहा है जो की समतल भू भाग है।

ब्लैक कलर की जो की ब्रेजा गाड़ी है जो की खड़ी हुई है और यह शोरूम लग रहा है जो की मारुति सुजुकी का हो सकता है।

लोड करवाने के लिए जो कि भाई साहब दो भाई साहब खड़े हुए नजर आ रहे हैं ये ऑन रोड लग रहा है और बाइक सवार भी जा रहे हैं अपने काम पर।

इस तस्वीर में मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसके नीचे की दो ऑर में एक दुकान का शटर लगा हुआ है और अ कांच की अलमारी लगी है और व्हाइट --

थैली लेके हाथ में और ए दूसरी तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग दफ्तर के आगे बैठे हुए हैं।

साइड में ये दीवार भी बनी हुई है और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है हरियाली भी दिखाई दे रही है जोकि अती सन सौंदर्य को दर्शाता है मन को भावने वाला है।

इस तस्वीर मैं में देख पा रहा हूं ये एक इलेक्ट्रिशियन कि दुकान हैं जोकि मशीनें और तैयार करता हैं अलग अलग उपकरण तैयार करता हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि ये लोग जो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं ये एक क्रिकेट का खुला भू भाग है जो --

कि है जो कि ऊपर की तरफ में जो कि बाइक में जो बैग होता है वो लगाया गया है और स्टैंड लगाया गया इसमें अलग-अलग बाइक के सामान भी मिलते होंगे।

इस तस्वीर में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसके एल्युमिनियम की परत लगाई--

देवी देवताओं की फोटो लगाई गई है जो की बे बिक्री के लिए रखी गई है और ऊपर में अलग-अलग प्रकार के देवी देवताओं कृष्ण जी खाटू श्याम जी व --